उसके ऊपर उसने कुछ पंक्तियां द्वारा किया और कुछ कहा धागे बंधे हुए दिख रहे हैं धागे के ऊपर एक रस्सी बांधी है और उसके ऊपर भी कुछ राखी रसिया बंधी हुई दिख रही है पीछे एक बैनर दिखाई दे रहा है इसमें सफेद अक्षर में दिखाई दे रहा है और पर्दा दिखाई दे रहा है।